बाल काटने वाला नाई हाथ मे हेयर ड्र ड्रायर लिए खड़ा हैं।

पहाड़ों के ऊपर हरी घास और हरे पेड़ दिख रहे हैं।

यह एक ऑफिस की तस्वीर है यहां पर हम बहुत सारे टेबल और कुर्सियां देख सकते हैं।